इस तस्वीर में मुझे कुछ डिब्बियों के अंदर स्क्रू पेंचकस दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे सामने कुछ --

जिसका गेट है वो लोहे का बना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ महिलाएं दिखाई दे रहीं है जो कुर्सियों पे बैठी हुईं है।

पास में मुझे एक जूस बनाने वाली मशीन दिखाई दे रही है टेबलों पे कुछ कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रहे हैं पानी की बोतले दिखाई दे रही है।

कचरा निकाल रही है इसके पास में एक पत्थरों की बनी हुई कुर्सी दिखाई दे रही है।

टेबल पे कुछ कागज जैसे दिखाई दे रहे हैं दीवारों पर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं पंखा लगा हुआ है।

और इसके ग्राउंड के अंदर कुछ गाय घास खा रही है और थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ तार दिखाई दे रहे हैं फूल दिखाई दे रहे हैं।

टेनों की बनी छत दिखाई दे रही है।